libreoffice draw में creating curves and polygons पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि draw में polygons यानि बहुभुजों और curves यानि वक्रों के साथ कार्य कैसे करते हैं
इस tutorial के लिए आपको लिबरे ऑफिस draw की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए कृपया इस website पर जाएँ
यहाँ हम ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 प्रयोग कर रहे हैं
बहुभुज the होते हैं poly का मतलब है बहु अनेक भुजाओं poly आकृति को बहुभुज कहते हैं
हम सीखेंगे कि इस slide में दिखाए गए नक़्शे को कैसे बनाते हैं यह नक्शा घर से school तक का रास्ता दिखाता है
इस tutorial के at तक आप अपने आप इस प्रकार का diagram बनाने में सक्षम होंगे
अब draw खोलते हैं मैंने इस file को routemap named दिया है और desktop पर सेव किया है
सबसे पहले grid view को सक्षम करते हैं ऐसा करने के लिए view पर click करें grid चुनें और display grid चुनें
drawing शुरू करने से पहले अब पेज margins और पेज orientation set करें
cursor को draw पेज पर ले जाएँ और context menu के लिए rightclick करें
page चुनें और page setup पर click करें
page setup dialog box दिखता है
format dropdown पर click करें और a4 चुनें orientation में portrait चुनें
left right top और bottom margins को 1 पर set करें ok पर click करें
अब default font size को 24 पर set करते हैं
main menu से format और character चुनें
character dialog box दिखता है
fonts टैब पर click करें और size क्षेत्र में नीचे जाएँ और 24 चुनें ok पर click करें
यह निश्चित करेगा कि जो text हम आकृतियों के अंदर type करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है
अब घर बनाने से शुरू करते हैं
घर के लिए एक वर्ग प्रविष्ट करते हैं और इसके अंदर home लिखते हैं
आगे घर के दायीं तरफ park बनाते हैं
park एक विषम आकृति का आयत है बायीं तरफ की चौड़ाई दायीं तरफ की चौड़ाई से ज़्यादा है
इसे दिखाने के लिए बहुभुज प्रयोग करते हैं बहुभुज बनाने के लिए drawing toolbar पर जाएँ
curve पर click करें और फिर icon के आगे छोटे काले arrow पर click करें
अब polygon filled चुनें
draw पेज पर cursor रखें mouse का बाँया button दबाएं और cursor को नीचे खींचे mouse button छोड़ें
हमने एक सीधी line बनाई है mouse बटन को दायीं तरफ तब तक खींचे जब तक एक समकोण त्रिभुज न बन जाये
mouse का बाँया button दबाएं और mouse को upward की तरफ लाएं double mouse के बाएं button पर doubleclick करें
आपने एक बहुभुज बनाया है इसे अंदर park लिखें
park के आगे एक commercial complex है यह भी एक विषम आकृति का बहुभुज है इसे बनाते हैं
drawing toolbar पर जाएँ curve icon के go वाले छोटे काले arrow पर click करें और polygon filled पर click करें
draw पेज पर cursor रखें mouse का बाँया button पकड़ें और इसे नीचे खींचे
अब mouse button छोड़ें आप एक सीधी line देखते हैं कर्सर को बायीं तरफ तब तक लाएं जब तक त्रिभुज की आकृति न button जाये
mouse के बाएं button पर click करें और mouse को upward ले जाएँ अब shift की पकड़ें और cursor को अंदर की तरफ खींचे
mouse button पर doubleclick करें
अब आपने एक अन्य बहुभुज बना लिया है अब इसके अंदर commercial complex लिखें
पिछली steps का अनुसरण करते हुए drawing toolbar से parking lot बनाएं अब polygon filled चुनें और फिर cursor को draw पेज पर रखें और बहुभुज बनाएं
अब इसके अंदर parking lot लिखते हैं
याद रखें कि आप जितनी चाहे उतनी भुजाओं वाला बहुभुज बना सकते हैं
इस tutorial को रोकें और इस नियत कार्य की कोशिश करें पाँच भुजाओं वाला छः भुजाओं वाला और दस भुजाओं वाला बहुभुज बनाएं
घर के दायीं तरफ एक residential यानि आवासीय complex है और इसकी आकृति आयताकार है
drawing टूल बार से rectangle चुनें
फिर draw पेज पर mouse रखें और आयत बनाने के लिए खींचें
हम इसे residential complex name देंगे
इस इलाके में एक खेल का मैदान भी है यह वास्तव में एक लम्बे आयत की आकृति में है
drawing टूल बार से polygon 45 degree filled चुनें
cursor को draw पेज पर रखें mouse के बाएं button पर click करके नीचे खींचे और इसे छोड़ें
mouse पर click करें और दायीं तरफ लाएं और छोड़ें अब mouse पर click करें और आयत पूरा करने के लिए इसे upward खींचें
mouse के बाएं button पर doubleclick करें
अब आपने एक और बहुभुज बना लिया है
अब इसके अंदर play ground लिखते हैं
अब प्ले ग्राउंड के आगे lake बनाते हैं
drawing toolbar से freeform line filled चुनें
draw पेज में mouse का बायाँ button दबाएं और mouse को वामावर्त दिशा में घुमाएं mouse का बायाँ button छोड़ें
हमने एक lake बना we है इसके अंदर lake लिखते हैं
इस क्षेत्र में आखिरी इमारत school है school परिसर भी एक बहुभुज की form में है
अब इसे अपने नक़्शे पर बनाते हैं दोबारा drawing toolbar से polygon 45 degree filled चुनें
आगे cursor को draw पेज पर रखें और बहुभुज बनाएं अंततः जब बहुभुज पूरा बन जाये तो mouse पर doubleclick करें
इसे अंदर school campus लिखें
एक text box प्रविष्ट करें और इसके अंदर school main gates type करें
अब text box को घुमाएं और इसे सही स्थिति में रखें
अब main menu से modify चुनें और rotate पर click करें
ध्यान दें कि handles लाल रंग में बदल गए हैं इसका तात्पर्य है कि हम rotate mode में हैं
क्या आप दोनों तरफ arrows के साथ वो छोटा arc देख सकते हैं हम इसे box को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं
अब cursor को text box के ऊपरी दायें कोने पर आखिरी handle के ऊपर ले जाएँ
rotation curve दिखता है
mouse के बाएं button को दबाएं curve को दक्षिणावर्त दिशा में तब तक खींचें जब तक कि वह सही स्थिति में न a जाये
अब rotate mode से बाहर निकलने के लिए draw पेज पर कहीं भी click करें
अब school का side entrance यानि प्रवेश द्वार भी दिखाते हैं
पिछली step की तरह एक text box बनाते हैं इसके अंदर school side entrance लिखते हैं
अब arrows प्रयोग करके दिशाएं बनाते हैं घर से हमें दायीं तरफ़ जाना है
drawing टूल बार से line ends with arrow चुनें
अब draw पेज पर जाते हैं और line बनाते हैं
फिर residential complex के आगे से गुज़रकर बायीं तरफ जाएँ
अब इस रास्ते को दिखाने के लिए एक अन्य line बनाते हैं
फिर play ground के आगे दायीं तरफ जाएँ नीचे जाएँ
फिर स्कूल के main gate तक पहुँचने के लिए दोबारा दायीं तरफ जाएँ
हमने अपना पहला रास्ता बना लिया है आपने ध्यान दिया होगा कि दो तरह के वक्र और बहुभुज बनाये जा सकते हैं
पहला filled विकल्प प्रयोग करके और दूसरा fill के बिना जब आप filled विकल्प प्रयोग करते हैं तो वक्र रंग से भर जाता है
आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि curve टूल बार के विकल्पों में से प्रत्येक वक्र बनाने के लिए mouse operation के भिन्न तरीके रखता है
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है curves टूल बार में सारे विकल्पों का प्रयोग करके वक्र और बहुभुज बनाएं
देखें कि वक्र या बहुभुज के प्रत्येक चुनाव के साथ cursor की आकृति और mouse operations कैसे बदलता है
जाँचें यदि आप filled विकल्प में fill color बदल सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ इस tutorial को देखने और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद